सफेद कलर की वॉल भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे तीन बड़ी बड़ी येलो कलर की पिलर भी दिखाई दे रहा है।

टोपी पहनता हुआ भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लाइट्स जलते हुए भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बड़े बड़े पहाड़ भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में मुझे छोटे छोटे घर भी नजर आ रहा है।

तस्वीर में मुझे एक बच्चा नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे एक बच्चा सफेद कलर की कपड़ा और जींस पहता हुआ नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे--

सब लगाया हुआ भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में मुझे चेयर्स के ऊपर काले काले--

इस तस्वीर मे मुझे गाड़ी टायर दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में मुझे पीछे में एक सफेद कलर की गाड़ी रखा हुआ भी नजर आ रहा है।

तस्वीर में मुझे बहोत सारे घर भी दिखाई दे रहा है पीछे में मुझे बहोत सारे गास भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक रास्ता भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे घास भी दिखाई दे रहा है पीछे में मुझे बहुत सारे पहाड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पानी दो जगह में जाते हुए भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे फ्लावर्स प्लान रखा हुआ भी नजर आ रहा है।